नमस्कार हमे यहां देखने के लिए ये मिल रहा है कुछ नया बिल्डिंग बन रहे हैं घर बना रहे हैं बहुत सारे और आ आस-पास मे गाड़ी है और बहुत सारे --

यहाँ हम हमको देखने के लिए ये मिल रहा है। बोहोत बड़े ये कबरगाह है जहां आदमी मरने के बाद दफनाया जाता है। आस-पास पेर भी है और घर भी है।